बड़ा गार्डन हेगा खूब सुंदर हेगा ओ खूब ट्रेन हेगी ट्रेन का कलर रेड कलर की ट्रेन --

कुछ ऑरेंज कलर के हार भी लटक रहे हैं मिक्स हार है कुछ मिक्स फूल भी हैंगे उसके अंदर सफेद लाल हरी पत्तियाँ --

ये एक मच्छी की दुकान है ये यहां पर दो लड़के बैठ के मच्छी काट रहे हैं।